और यहाँ पे पंखा लगा हुआ है बहुत सारे घड़ियां भी हैं टेबल उबुल है सब।

यहाँ पे सूरज निकला हुआ है काफी फील्ड बड़ा है यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ टहल रहे हैं यहाँ पे घर घर और बहुत सारा घर है उसमे सब बच्चे खेल रहे हैं दौड़ रहे हैं और कुछ चलते हुए नजर आ रहे हैं और सूरज निकलता हुआ नजर आ रहा है।

यहां एक जिम है यहाँ पे बोहोत अच्छी सीट है बैठने वाला जिम अच्छा है रूम भी अच्छा है | जिम करने का सब सामान है काफी अच्छा है बोहोत सुन्दर लग रहा है बोल भी है लाइट भी है कोट ओट लगा हुआ है काफी सुन्दर है टोपी लगा हुआ है काफी अच्